चित्र में मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे घर के पास खड़ी हुई गाड़ी दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं चित्र में मुझे एक बिल्डिंग --

चित्र में मुझे होटल पंकज प्लाजा दिखाई दे रही है।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

चित्र में मुझे रंगीन टेप रखे हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे द विस्की --

चित्र में मुझे कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हरे हरे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे काली माता की मूर्ति--